और उसके सामने रोड के बगल में एक पेड़ दिख रहा है सामने में एक बाइक पर आदमी बैठा हुआ है।

और दो बल्ब बर रहा है और सामने एक पोस्टर लगा हुआ--

और एक पेड़ दिख रहा है ऊपर आसमान मे दिख रहा है इसके बगल में घास दिख रहा है पानी में कुछ बुलबुल --

सामने में लाइट बन रहा है और दीवार व्हाइट कलर का पेंट --

और सामने में दो व्हाइट बलून --

और जमीन पर एक स्कूटी लगा हुआ है जिसके बगल में एक बाइक लगा हुआ है।

सामने में एक पहाड़ दिख रहा है।

और झुलुआ रखा हुआ है बगल में एक घर है उसके बगल में एक दीवाड़ है जिसपे आदमी चलने का रास्ता दिया हुआ है।

और एक उसके बगल में बाइक लगा हुआ है।

जा रहे हैं जो की वाइट कलर का कपड़ा पहने हुए हैं।

मंदिर दिख रहा है जिसमें बहुत सारा फूल--

और एक पोल दिख रहा है जोकि जमीन में--

और सामने एक पोस्टर दिख रहा है।

सामने एक होटल दिख रहा है।

और उसके सामने तीन आदमी है और साइड में साइकिल लगा हुआ है।

एक पानी का झरना है और उसके पीछे एक घर है।

उसके पीते दो कोस दो पुतला खड़ा है।

और रोड पे एक वाइट कलर की कार खड़ी है।

सामने में एक डी_जे चोंगा दिख रहा है।

और एक आदमी बेंच पर बैठा हुआ है।

वॉल पर ए_सी लगा हुआ है।

एक स्कॉर्पियो दिख रहा है और एक इंडिगा दिख रहा है।

गढ़ा किए हुए हैं और उसमें वह ईटा रखे हुए हैं।